और ये बच्चें यहाँ पे स्टेज पर कुछ बच्चें हैं।

और कुछ कारें जीप साइड में लगी हुई हैं।

सूर्य की किरणे दिखाई दे रही है।

जिसपे होटल मीनू प्लेस लिखा हुआ है।

यहाँ पे उस होर्डिंग पे लिखा हुआ है की इस होटल में ठहरने की व्यवस्था है और यह मधेपुरा में है।

इसके सामने एक बिल्डिंग है और इस इसके इस होर्डिंग के पास एक --

जहाँ पे छपाई का काम चल रहा है।

और एक सफ़ेद रंग की जीप दिख रही है जीप के पीछे --

अ जीप के पीछे सफ़ेद ईमारत है।

उन के हाथ ऊपर की ओर जॉइंट है।

यह इस्टर्न रेलवे हेल्थ सेंटर है।

और लाइट लगी हुई है और इस हेल्थ सेंटर में एक विन्डो है।

सो साड़ी पहनी हुई दिखाई दे रही है महिला के बाल खुले हुए हैं।

एक आदमी लेके जा रहा है भैंस के साइड में एक बहु मिली मंजिला इमारत है ।

उसको आधे भाग को पीले रंग के शेड से कवर किया हुआ है।

वॉलीबॉल खेल रहे है बच्चों ने शूज डाला हुआ है कुछ बड़े --

और पुजारी पूजा कर रहा है यह मंदिर --

जो काम कर रहें हैं इसमें से एक मजदूर अपने सर पर ईटा रखा थाल रखा हुआ है।

यह एक पुस्तक भण्डार है जिसके बोर्ड पे विजय पुस्तक भण्डार लिखा हुआ है।

जेन्ट्स सैलून है जिसमें एक व्यक्ति --

जो इसको चला रहा है उसने सफेद रंग की टी-शर्ट ।

यह एक गेराज है जिसमें --